इस तस्वीर में पीछे नीला आसमान और बहोत सारे हरे - भरे दिखाई दे रहे है सामने की तरफ बहुत सारे लोग दिख रहे है छोटे - छोटे मकान नज़र आ रहे है तस्वीर बहुत ही सुंदर लग रही है।

इस चित्र मे एक बड़ा पेट्रोल पम्प दिखाई दे रहा हैं पीछे नीला आसमान दिख रहा हैं आसपास हरे-भरे पेड़ दिखाई दे रहे हैं पीछे की तरफ एक महिला खड़ी दिख रही हैं अंदर गाड़ियों मे पेट्रोल डलता दिखाई दे रहा हैं धूप की तेजी बहुत ज्यादा दिख रही हैं।

नीला आसमान दिखाई दे रहा है एक बहुत बाद कार्यली या फिर बहुत बड़ी मस्जिद बनी दिखाई दे रही है सामने की तरफ सामने की तरफ बहुत सुंदर-सुंदर पेड़ दिख रहे है नीचे धूप का अक्स पड़ रहा --

इस चित्र मे पीछे नीला आसमान हरे भरे ये दिखाई दे रहा है एक बड़ा पेट्रोल पम्प दिख रहा है हरे-भरे पेड़ दिख रहे है एक बड़ा पेट्रोल पम्प दिखाई दे रहा है बाहर की तरफ--

आ पेट्रोल डालता दिखाई दे रहा है सफेद रंग के पीछे सफेद रंग का एक दो कमरे भी बने हुए--

पति उससे चिपका खड़ा हुआ है एक बच्चा ये घर बहुत पुराना लग रहा है नीले रंग का रंगा हुआ नीचे की तरफ बहुत धूप दिखाई दे रही है पीछे पीछे हरे पेड़ दिख रहे है सामने की तरफ गेट नजर रहे है।

सामने नीला आसमान काले रंग का ऑटो दिखाई दे रहा है आसपास बहुत सारी आसपास बहुत सारे टैंकर खड़े दिख रहे है पीछे की तरफ बड़ी --

एक वैन दिखाई दे रही है आसपास बहुत सारी बस खड़ी हुई है नीचे की तरफ बहुत सारी बाइके खड़ी हुई है सामने की तरफ नीले आसमान पर एक आआ आसपास --

कचरा दान डस्ट्बिन रखा हुआ दिख रहा है कचरा फेकने के लिए ये चित्र बहुत ही सुंदर लग रहा है।

इस चित्र मे पीछे नीला आसमान एक बड़े शासकीय पॉलिटेक्नीक कॉलेज नजर आ रहा है इस चित्र मे सामने की तरफ मैदान दिखाई दे रहा है तस्वीर बहुत ही--

इस चित्र मे पीछे नीला आसमान ऊँचे-ऊँचे पहाड़ दिख रहे है सूरज डूबता दिखाई दे रहा है हरे-भरे पेड़ों से तस्वीर चित्र बहुत सुंदर लग रहा है ऊँची पहाड़ी पर --

इस चित्र मे एक पॉलिटेक्नीक कॉलेज दिखाई दे रहा है पीछे नीला आसमान और बहुत बड़ी बिल्डिंग नजर आ रही है सामने --

चेयर टेबल भीं रखी हुई है पीछे की तरफ बहुत से ब्यक्ति बैठे दिखाई दे रहे है लाइटिंग लगी दिख रही है ये चित्र बहुत सुन्दर बनाया।